यहां पे बहुत सारी लाइटें दिखाई दे रही है।

यहां पे बहुत लोग दिखाई दे रहे हैं।

यहां पे छोटे छोटे बहुत घास हैं।

यहां पे बहुत सारे घास दिखाई दे रहे हैं।

यहां पे बादल दिखाई दे रहा है।

यहां पे एक सोलर पैनल दिखाई दे रहा है।

यहां पर हरा कलर का पीड़ा दिखाई दे रहा है।

यहां पे एक आदमी दिखाई दे रहा है।

यहां पे छोटे छोटे पौधे भी दिखाई दे रहे हैं।

यहां पे बहुत सारे बैलून दिखाई दे रहे हैं।

यहां पे एक नाव दिखाई दे रहा है।

गमले के ऊपर लगाए गए पौधे दिखाई दे रहे हैं।

जहां पे ए_सी लगाया हुआ है।

यहां पे कुछ सेव हैं कुछ संतरे हैं।

यहां पे कुछ डब्बे दिखाई दे रहे हैं।

यहां पे एक नदी दिखाई दे रहा है।

यहां पे बहोत बड़े-बड़े पेड़ भी दिखाई दे रहे हैं छोटे-छोटे पौधे भी दिखाई दे रहे हैं।

ब्रश दिखाई दे रहे हैं।